रैक में एक सिस्टम रखा हुआ है और यह सिस्टम पर कागज भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में दिखाया गया हैं कि यहां पर एक लड़की शीशे के सामने बैठी हुई है।

यहां पर कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यहां पर बड़े बड़े रैक बनाए गए हैं।

यहां पर ग्रीन रंग का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

ऐ एल_जी लाइट से यहां पे चसाया गया है।

यहां पर एक बड़ा सा स्वराज का आठ सौ पचपन ट्रैक्टर है बहुत ही नया है बिल्कुल यहां पर सीटों पर भी पन्नी चढ़ी हुई --

यहां पर एक ही आदमी बैठा हुआ है।

और यहां पर एक दीवार है जिसमें यहां पर एक लोहे का गेट लगा हुआ--

के अंदर बहोत सारी गाड़ियां रखी हुई है।

आगे यहां पर भी खुला हुआ है।